ये बहोत सुंदर नजारा है यहां पे काफी पेड़ पौधे हैं पहाड़ है ऊपर आसमान में बादल नीले आकाश हैं ब बहुत अच्छा नजारा है देखने को।

ये क्लासरूम है जहां पे एक आदमी एक टीचर बच्चों को कुछ बोर्ड पे समझा रहे है। साथ में बच्चे बहोत सारे जो कुर्सियों पे बैठे हुए है।

सात मो और दो चार बैंक का बिल्डिंग है जिनमें शीशे हैं।

अच्छे बड़े बड़े पहाड़ है कच्चा कच्चा कही कही पे रास्ता है कंकड़ वगैरा है छोटी घास है बढ़े भाया पेड़ है।

यह खुला खुला सा मैदान है जहां पर--

खुला आसमान है पेड वगैरह बहुत सारे तार जा रहे हैं टावर है बिजली के।

जय एक दुकान है जिसमें एक आदमी प्रेस कर रहा है माक्स लगा रहा है।

जहां पे छोटे छोटे गमले दिखाई दे रहे हैं।

एक लोहे का गेट है जिसके ऊपर लिख रखा है गाड़ियां ऑफ श्री बालाजी गोपाल गोवंश जीव केंद्र संतरे कलर का इस पर गाय छाप रही हैं।

और इसकी दीवार को ऊपर कुछ बल्ब वगैरह हैं और कॉफी मशीन दिखाई दे रही कांच के मिनरेड झंडे हैं।

है आदमी है जोकि एक लोहे कि एक पाइप को पकड़ा हुआ है नीचे दो बोनट लटके हुए हैं।